ये बस जो है वो रेड और सिल्वर रंग की है और उसकी विंडो ब्लैक कलर की है।

गाड़ी की बैक साइड इस फोटो के अंदर दिखाई जा रही है।

ये एक फोटो है।

ये जहाँ पे अन्य प्रकार के गिफ्ट रखे हुए हैं।

और यहाँ पे सर्विस सेंटर है हौंडा का।

ये फोटो एक ठेले की है जि --